और यहाँ पे धूप निकली हुई है। आसमान नीला एंड पीला दिख रहा है। रोड निकली हुई है। रोड में पेड़ की छाया हुई है। इसलिए यहाँ पे धूप कम पड़ --

ये यहाँ पे बस खड़ी हुई हैं। यहाँ बस स्टैंड में बसें बहोत सारी खड़ी हुई हैं। यहाँ पे पांच बसें खड़ी हुई हैं। दुकान है। यहाँ एक आदमी टहल रहा है।

पिंक कलर की साड़ी पहने है। कोई येलो कलर की साड़ी पहने हुए है और यहाँ पे जैसे यहाँ पे न नौ देवी रखी हुई है। इसलिए यहाँ पूजा करने के लिए आदमी आये --

यह एक चिड़ियाघर है। यहाँ पे तोता बैठा हुआ है। बहोत से तोता बैठे हुए हैं और ये जालियाँ लगी हुई हैं और जालियों के ऊपर एक चदर लगा हुआ है जो हरा रंग का है।

डंडे लेके खड़े हुए हैं और काफी लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं और जो और काफी लोग खड़े भी होके भी देख रहे हैं और कुछ लोग डांस कर रहे हैं।

यह एक डीजे है। इ जो आठ ठो साउंड रखे हुए है यहाँ और छः ठो तुरी लगी हुई हैं।